यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे है जो की अपना-अपना प्रोजेक्ट बना रहे है एक बच्चे के हाथ में सिजर टेप और पिंक शीट है।

एक बच्चे के हाथ में रेड रिब्बन है और एक बच्चा कुछ कलर कर रहा है और एक बच्चा ड्राइंग कर रहा है।